यह नदी देखने मे बहुत ही गंदी प्रतीत होती है इसके सामने हरियाली खेत जैसे वातावरण है।

जिसके किनारे पे बहुत से गाछ वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं।

इस तस्वीर को देख कर एसा प्रतीत होता है यह एक कोई मामूली बढ़िया सी किराने की दुकान हैं।